बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई--

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में हिरण दिख रहा है।

हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो मे नदी दिख रही है।

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रही है।